नीचे की ओर पानी के फुहाड़े ऊपर की ओर नि निकलते हुए डिखाई दे रहे--

और साइड में चादरें बिछाई हुई दिखाई दे रही हैं रात का समय है सामने की ओर व्हाइट कलर की लाइटें लगाई गई हैं जो जलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं।

सामने की ओर ए_सी_सी की सीमेंट हमें रखी हुई दिखाई दे रही है।

पीछे की ओर टाइल्सें लगाई गई है जो वाइट कलर की टाइल्सें लगाई हुई दिखाई दे रहीं --

गुलाब के फूल लगाए गए हैं जो गमले के ऊपर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पीछे एक इंसान व्हाइट कलर की शल्ट पहन के खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

पानी के बॉक्स रखे हुए दिखाई दे रहे हैं रखे हुए दिखाई दे रहे हैं साइड में--

दो गेट लगाए गए हैं साम दो मतलब एक एक सामने की ओर कई सारे सामने की ओर एक बंगला बनाया--

कितनी सारी यहां पर बेंचे लगी रखी हुई दिखाई दे रही है बेंच कुर्सियां लगी रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

दो से तीन मंजिल की बनी गई है व्हाईट कलर से पोटा गया है सामने की ओर एक मैदान खाली मैदान दिखाई दे रहा है उसमें सामने की ओर ब्लैक कलर की मैट बिछाई गई है

ऊपर की ओर व्हाइट कलर से पोटा गया है। नीचे की ओर टाइल्सें लगाई गई है जो व्हाइट कलर की टाइल्सें दिखाई दे रही हैं।

ऊपर जिओ और नीला बादल नीला बादल दिखाई दे रहा है थोड़ा साइड के ओर एक घर बना हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में दो तीन टॅक एक टॅक्टर दिखा जो अच्छा खासा दिखाई दे रही है जो--

यहां कई कई सारी कुर्सियां बेंच बिठाई रखी हुई दिखाई दे रही और इधर व्हाइट कलर की लैटरिंग बनती हुई दिखाई दे रही है।

तैयारी होने नीचे की ओर लोहे का किल लगाया गया है सामने को--

सिंधोरा रोड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें नीचे की ओर--

नीचे गिट्टी बिछाई गई है आसमान नीला पड़ा हुआ है दिखाई दे रहे हैं।

सभी को एक बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही जो तीन से दो से तीन मंजिल की बिल्डिंग बनी जिसमे ढेर सारे रोशनदान ढेर सारे गेट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक चश्मा लगाया हुआ बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। साइड में--